एक छोटा तालाब है तालाब का पानी नीला है कुछ पैड पौधे है जो की हरा भरा एक पानी का टैंक टैंकर है बहुत से पैड पौधे है जो छोटे बड़े है बहोत से घड़े दिख रहे हैं।

सामने की साइड एक टावर है बहुत सा मकाने है जो की बड़े है अगल बगल घासे है पैड पौधे है जो की हरे भरे है।

कुछ सीढ़ियां हैं सीढ़ियां में टाइल्स लगी हुई हैं बिजली के तारे गए हैं।

ऊपर एक और मकान है जिसके बलकनी में स्टील के लोहे अ स्टील लगे हैं एक बाइक और स्कूटी खड़ी है बगल में एक और--

बहुत सी कुर्सिया रखी है बिच में चलने के लिए रास्ते है जिसपे डिजाईन दार इटे लगाई है एक आदमी है आकाश का रंग सफ़ेद है एक पानी की बड़ा सा टैंक है।

एक गार्डन है गार्डन में बहुत सी घासे से है जो की हरा भरा है एक कुर्सी रखा है।